कुछ टी_वी दिखाई दे रहे--

दो आदमी और दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

फैन और टेबल और कुर्सियां दिखाई--

ऐ नाइट व्यू दिख रहा है।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

यहां पर कुछ लोग खाना बनाते हुए दिखाई--

और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही --

एक आदमी दिखाई दे रहा--

यहां एक पोट दिखाई दे रहा है।

यहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--